इस नदी का पानी बहुत ही सफा है और यहाँ पे बहुत सारी मछलियाँ रहतें हैं। इस नदी में --

जहां पे बहुत सारे विद्यार्थी लोग मिल के कुछ प्रोजेक्ट क्राफ्ट बना रहे है।

गेंदा फूल ठन्डे के टाइम में होता हे ये फूल देखने में --